टिकाऊ है यहाँ जिम मशीन मिलती है बहुत --

बहुत ही अच्छा डांस कर रही है ये जिनको हमे लगता है मैडल मिलने वाला है जोकि पूरा --